अलग-अलग टाइप के फिशेस वहाँ पर रखे हुए हैं।

यह एक एयरपोर्ट का इमेज है।

यह एक फोटोशूट का इमेज है।

और साथ में लाइटिंग डेकोरेशन के साथ सीरिज भी लगी हुई हैं।

यह पिक्चर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का है।

और जमीन पर सफ़ेद रंग की बर्फ की चादर जमी हुई नजर आ रही है।

यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग ब्रिज का इमेज है।

जिसमें महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर और मेकअप का स्टूडियो है।

एडवरटाइजमेंट में डॉक्टर सुशांत कुमार हॉप होस्पिटल नाम का दक्षिण-पश्चिम --

डंडी लगा कर मचान बना रखी है।

जिसमे कस्टमर्स अपना काम करवाने के लिए मास्क पहन कर आए हैं।

यह फोटो जिला परिवाहन कार्यलय समस्तीपुर की बिल्डिंग को दर्शाता हैं।

और पीछे दो हार्ट बने हुए है।

बलून से डेकोरेशन किया गया हे।

और इस पर पन्नी लपेटे हुई हैं।